आप देख पा रहे होंगे कि एक ये यहां पे दुकान का फोटो जहां पे एक कांच के सिसे में यहां पे जूस रखा हुआ है जूस की यहां पे बोतल रखी है जो कि अमरूद का जूस है।

देख पा रहे होंगे की बहुत शानदार ये दुकान का फोटो जहां पे कुछ यहां पे छोटे-छोटे यहां पे गिफ्ट -गिफ्ट यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं।

आप देख पा रहे होंगे की एक बहोत ही शानदार रेस्टोरेंट का फोटो है।

और यहां पे एक पंखे भी लगी ए_सी भी लगी हुए है यहां पे बहोत अच्छी साफ सफाई हो रखी है यहां पे इसकी आव छत में एक बहोत बढ़िया पे लाइट लगी हुई यहां पे बहोत अच्छा पर डेकोरेशन बहोत अच्छा पे टेबल्स है।

आप देख पा रहे होंगे कि एक यहां पे इस बहुत बड़ा यहां पे मंच है जहां पर बहुत सारी सुंदर--

यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे यहां पे डिजाइन बना हुआ है वहीं--

और मेरा मानना की गेंदे के फूल की माला भी बनाई जाती है और उनको यहां पे भगवान पर अर्पित भी किए जाते वो एक वहां पे छोटा सा एक और यहां पे पेड़ खड़ा हुआ है।

तो इसने काफी काले काले रंग के पतीले लगा रखे है अपने यहां पे खाना बेच रहा है यहां पे बहोत अच्छा फोटो है यहां पर ये --

की में शादी विवाह में भी खाना बनाऊंगा तो साले इतना बड़ा तुम।

कोटिक की दुकान है और यहां पे मैं आपको एक दुकान है जहां पे आपको यहां पे सभी प्रकार के यहां पे--

जहां पे पहुंच गया पर बहुत ब्लैक कलर की बहुत सारी कुर्सियां है।

आपको की पानी पूछता है बेचारे दोनों यहां पर खड़े हुए हैं और आराम से कुछ अपने बारे में सोच रहे हैं और यहां पे--

आप देख पा रहे होंगे कि एक ये मानसरोवर के नाम से हॉस्पिटल है और ये मुझे लगा रहा है रोहतक का ही हॉस्पिटल है मेरे यही का ही।

ओ मैं यहां पे जाता हूं तो यहां पे मुझे रोहतक में मानसून के नाम से एक पार्क दिखाई देता है और मुझे इस फोटो में मुझे ये मोटरसाइकिल भी दिख रही है।

मुझे यहां पे देखने में लग रहा है कि एक यहां पे एक सी शेर वाली माता का फोटो यहां पे शेरो वाली माता के हाथों में--

बीलकुल बहोत बढ़िया लग रहा है यहां पे देखने में से सोम वन में समान भी लेकर आ--

और यहां पे सब कुछ एकदम बटर भी है मक्खन भी है यहां पे सब बिल्कुल शानदार दिखाई दे रहा है लग रहा है केक भी है बापू से पूछो केक भी मिलेगा।

और यहां पे बहुत सारी यहां पे अच्छे-अच्छे ग्रिल ग्रिल गेट लगे यहां पे सामने पार्क में यहां पे--

और सब कुछ यहां पे लेडीज भी और जेंट्स भी दोनों प्रकार के आपको जूते मिलेंगे लाइट्स यहां पे लेग कैमरा भी यहां पे लगा हुआ है और साफ सफाई हाइजीन बहुत अच्छी है।

आप देख पा रहे होंगे कि एक दुकान का फोटो है जहां पे इस दुकान के अंदर मुझे लग रहा है बहुत सारे यहां पे पर्दे लगे हुए हैं।

जो लाल पीले नीले हरे अलग अलग प्रकार के भी पौधे जो कि एक पाइप अंदर लगे हुए है।